यहां पे कई लोग बैठे हुए हैं।

यह एक पार्क का फोटो लग रहा है जहां पे खेलने वाले कुछ बच्चों का झूला भी है।

इसपे भी कई सारे लोग और कई सारे गाड़ियां भी हैं।

इसके पीछे बहुत सारे पहाड़ दिख रहा है।

यहां पे कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहाँ पे एक घर है जो कि हो सकता है हॉस्पिटल या स्कूल हो।

यहां पे कई सारे लोग आए हुए हैं।

यहां पे कई सारे पेड़ पौधे भी हैं।

येत ये सुबह सुबह का फोटो लिया हुआ है।

दुकान के बाहर कई सारे गाड़ी और कई सारे लोग भी दिख रहे हैं।

यहां पे एनुअल स्पोर्ट्स गेम डे मनाया जा रहा होगा।

कई सारे छोटे छोटे गमले वगैरा भी लगा हुआ है।

और ये फोटो रात का लिया हुआ लग रहा है।

शायद यहां पे बारिश हुई होगी क्योंकि रोड गीला है।

यहाँ पे कई सारे दवाइयां रखे हुए हैं।